कूल की यूनिफार्म पहन रखी है।

कुछ कुर्सियां और टेबल लगे हुए नजर आ रहे हैं।

लगी हुई नजर आ रही हैं।

यहां पर हमें बहुत सारी किताबें पड़ी हुई नजर आ रही है।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

और कुछ लोग नहाते हुए दिख रहे हैं।

एक शादी वाली स्टेज नजर आ रही हैं।

और बैठने के लिए कुछ टेबल भी--

कुछ कस्टमर्स घूमते हुए नजर आ रहे हैं।